और मोबाइल की दुकान में मोबाइल बनते हैं मोबाइल की दुकान का नाम है मोबाइल सर्विस रिपेयरिंग सेंटर ।

बेरीज के ऊपर मेरे ख्याल से पटरी है पटरी के नीचे ब्रिज है ब्रिज के नीचे नदी है नदी में कुछ लोग नहा रहे हैं।

दूसरा व्यक्ति खंबे के पास बैठा है और चार लोग खड़े हुए हैं।

मैच के नीचे जहां मैच खेल रहे हैं वहां हरी कलर की--

यहाँ पर एक बिलडोजर खड़ा हुआ हैं बिलडोजर --

है और तीसरी गाड़ी एक स्कूटी है जो एक्टिवा है चौथी गाड़ी जो है एक एक्टिवा के बाजू में है वो डील--

दोनों लेडिजे बैठी हुई है और वो कुर्सी में बैठी हुई है।

कार के बाजू में एक ऑटो भी है और ऑटो में एक इंसान ऑटो चला रहा है।

और पांच में गुलाब पांचवें में बिल व्हाइट कलर को गुब्बारा है।

और पेट्रोल पंप मे दो पंप लगे हुए है और पंप के सामने एक टैंकर खड़ा हुआ है।

और टीन का सेट लगा हुआ है टीन का सेट ब्लू कलर का है।

यहां पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर तीन कारे खड़ी हुई है और बिल्डिंग है बिल्डिंग कम से कम तीन चार माले की है।

घास में है और सामने एक बिल्डिंग दीख रही है जो वाइट कलर की है।